जो की हम देख सकते है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत शानदार लग रहा है देखने से हम समझ सकते है की हां ये कोई अच्छी जगह है।

ये भी बहुत अच्छा लग रहा है बाहर काफी जगह भी है रोड भी बना हुआ है पक्का रोड है एक दम एक नंबर का रोड है

हूं रोमांचक मनोरंजन होने वाला है यहाँ पे कोई आने वाला है जैसा लग रहा है कुर्सियों से इसको पूरा सजाया गया है।

इधर एक बिल्डिंग का निर्माण भी हो रहा है और सामने इसके एकदम हरयाली छोटी-छोटी घासें हरी जो उसकी शोभा को और बढ़ा रही हैं।

और नीचे काफी इसमें जगह छोड़ी गई स्पेस छोड़ा गया है ताकि बच्चे खेल कूद सकें ऐसा लग ही रहा है की ये स्कूल और विद्यालय ए ही बन रहा है कॉलेज बन सकता है।

और घासें भी हैं इसमें घासों को भी काटा गया है। फूल भी लगाया गया है साइड साइड में पेड़ भी लगाया है हरियाली काफी अच्छी है मनभावनी लग रही है यहाँ पर।

कितना अच्छा लग रहा है मस्जिद ये जहां पे मुसलमान लोग नमाज़ अदा करते हैं अल्ला को याद करते हैं अपनी परेशानियों को अल्ला से कहते हैं।

ऐसे में भी बहुत सुन्दर लग रही है बहुत ही आकर्षित लग रही है यहाँ पे हम देख सकते है कि एक बिल्डिंग बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है।